ये एक रोड साइड का अ पिक्चर है जहाँ पे कुछ दुकाने है कुछ दुकाने अ मोबाइल की शॉप है एक पतंजलि क्रीम है शायद इसकी भी अ शॉप है और कुछ गाड़ियाँ यहा पार्क की हुई है और लोग आ-जा रहे है ऐसा लगता है कि आह किसी छोटे जगह की रोड साइड फोटो है।

और अनफोरचुनेटली मुझे मछली पसंद ही नहीं थी इसका सर फाड़ देते जा के वहीं पे हम ।